यहाँ पर पिक्चर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आएंगी और यहाँ पर ठंडी-ठंडी हवाएं मिलेंगी।

कम नहीं होता सब इसके लिए बराबर होते हैं।

वक्त बिताते हैं और उन्हें अच्छा लगता है और ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पर देखने मिलता है हमें।

का दृश्य हमे दिखा रहा है।

यह एक रास्ता है जो एक चर्च की तरफ जाता है इस चर्च में शादियां होती हैं तथा इसके आरो पास हमे देखने में बहुत ही खूबसूरत --

ईसाई धरम अपने इसबर को याद करते हैं।

जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड पाकिस्तान इन --

और एक प्याले छोटी सी प्याले में रखे हैं इसे चटनी कहते हैं जो खाने में बोहोत ही स्वादिष्ट होते हैं।

यह एक दुकान है। जिसमे हमारी --

अर् सुविधा की हमें चीज़ मिलती हैं जैसे ब्रेड होलिस्क दाल चीनी।

यहां पर एक कुछ बड़ा सा नेट लगा हुआ होता है। जिसके अंदर हमें फुटबोल अपने सिर से या हमें अपने किक मार कर उसके अंदर पहुचनी होती है और --

यह एक समंदर है। जहां पर एक इन्सान खड़े होकर उस समंदर को देख रहा है और आनंद ले रहा है।

काफी तादात में भीड़ मौजूद होती है और यहाँ पर बोहोत ही ज्यादा पानी होती है और यह बोहोत ही मज़ा हमें नाहने में आता है। इसका नाम स्वमिंग पुल है।

यहाँ पर बॉडी भी बोहोत अच्छी बनती है।

ईसाई अपने इस्वर को यद् करते हैं तथा उसे दवा करते हैं। या इस्वर हमारी सारी परेशानियों को दूर कर दे।

जहाँ पर इलाज़ होता है। यहाँ पर काफी चीज़े हमें --

और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमें हर चीज़ हमें सुविधाजनक मिलती है हम को भी मज़ा आ रहा --

यह एक महजीद है। यहाँ पर मुसलामन अपने रब को याद करते हैं तथा उससे दुआ मांगते है कि या मेरे रब --